यह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें ए_सी भी लगा हुआ है यहां पे बहुत ज्यादा मेज रखी हुई है।

और यहां पर बहोत सारी टेबल भी रखी हुई है और यहां पे एक लेडीज काम--

और यहां पे बहुत बड़े बोर्ड लगे हुए हैं यहां पे काली कलर की सीढ़ी बना रखी है।

और यहां पे एक आदमी बैग टांग के जा रहा है एक आदमी ने यहां पे घ --

यहां पे एक बहुत बड़ा खेत है खेत में बहुत ज्यादा भैंस बांधी हुई है और यहां पे बड़े बड़े--

यहां पे हरी हरी घास बहोत ज्यादा है और--

और यहां पे एक तस्वीर लगी हुई है यहां पे तीन मशीन भी लगी हुई है।

और यहां पे टाइल भी लगा रखी है यहां पे एक दरवाजा भी है यहां पे एक टेंट वाली--

यहां पे अलग अलग कलर के गुब्बारे लगा रखे हैं एक सफेद कलर का गुब्बारा है एक नीला कलर का है।

यह एक बहोत बड़ा जंगल है यहां पे बहोत छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं।

और यहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा रखे हैं यहां पे एक आद--

और यहां पे सेंट भी रखे हुए है और यहां पे बहोत ज्यादा कपड़े रखे हुए यहां पे बहोत बड़ी बड़ी टेबल भी लगा--

और ऊपर बहोत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और यहां पे बहोत ज्यादा आदमी आते--

और यहां पे अलग अलग कलर के पोल भी खड़े हुए हैं।

आदमी भी बैठा हुआ है यहा पे गुब्बारे भी लगे हुए है और यहा पे एक कुर्सी भी र --

दुकान भी है और साइड में बहोत बड़ा होटल है और यहां पे कुर्सी भी रखी हुई है। यहां पे एक आदमी कम कर रहा है। यहां पे एक तंदूर भी रखा हुआ है।

ये एक बहोत बड़ा गाड़ी का सोरूम है और यहां पे अलग अलग कलर की गाड़ी खड़ी हुई है यहां पे एक मेहंदी कलर की गाड़ी है।

दो चम्मच भी है एक प्लेट में यहां पे तीन चम्मच है और यहां पे बहोत बड़ी बड़ी प्याज भी काट रखी है और यहां पे नींबू भी रखे हुए हैं एक टेबल बहोत बड़े --

यहां पे एक छतरी भी लगी हुई है यहां पे एक सकूटी भी--

और यहां पे एक आदमी काला कोट पहन के खड़ा हुआ है और यहां पे--